और कुछ फूल दो कैरेटो में रखे हुए है जो स्टूल के ऊपर रखे हैं एक स्टूल के ऊपर लिफाफा रखा है जिसमें पता नहीं क्या है।

बहोत ही अच्छा सुंदर दृश्य ये देखने को है।

जो की अलग अलग सीक्वेंस में रखे हैं और--

एक आदमी के बाल काट रहा है और--

और ऊपर शायद एक बाल्टी भी नजर आ रही है दो लोग के साथ एक बैग नजर आ रहा है।

ब्रिज के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं।